सामने एक छोटा सा गाँव नजर आ रहा हैं।

सामने एक पहाड़ नजर आ रहा है पहाड़ के नीचे कई सारे पेड़ --

सामने दिखाई दे रही है दूर में पहाड़ नजर आ रहे हैं।